आप देख सकते हो गायिस बोहोत अच्छा लग रहा हैं। ये दुकान बोहोत ही बढ़िया लग रहा हैं और यहाँ पे बोहोत अच्छा-अच्छा सा सामान मिलता हैं। देखो यहाँ पे बोहोत सारे आदमी सामान लेने आते। बोहोत ही अच्छा दुकान है ये।